इसके पीछे की साइड में धुंधला बिल्डिंग है और एक--

व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है एक ग्रे कलर का बिल्डिंग दिख रहा है।

यह एक वर्कशॉप दिख रहा है जिसमें छह सात मशीन लगी हुई है एक ब्लू कलर का जार दिख रहा है एक ग्रे कलर का एक--

इसके पीछे बहोत सारे भक्त हैं आगे भी भक्त हैं आदमी सब खड़े और एक ट्रेलर पे मूर्ति को बैठाया गया इसके बैक साइड में--

जोकि व्हाइट कलर का पेपर सटा हुआ है बीच में जो बोर्ड है वो ब्लू कलर का है एक आदमी खड़ा है बाइक के पास--

छोटे से प्लास्टिक के दो कुर्सी और रक्खा हुआ हे एक मोबाइल रखा हुआ है चेयर पे एक आदमी का सिर्फ हाथ दिख रहा हे पीछे एक पंखा --

एक बाजार का तस्वीर है जिसमें आजाद होटल दिख रहा है बगल में एक बिल्डिंग है जो ये फर्स्ट फ्लोर --

ये क्लास का रूम है जिसमें दस से बारह टेबल और कुर्सियां लगी हुई हैं लेफ्ट साइड में एक खिड़की दिख रहा और फ्रंट साइड में भी एक खिड़की है।

इसके ऊपर में जो ना आसमान है नीला कलर का।